एक रोड है जिसके एक साथ कुछ बातें खड़ी है इनमें से एक बार सफेद कलर का है। सामने तो शीशे लगे--

रोड के चारों तरफ लाइटे लगी और कुछ पेड़ पौधे लगे जो की हरे भरे--

और पेड़-पौधे काफी बड़े-बड़े है तालाब के चारो तरफ कुछ घर हैजो की काफी उँचे हैऔर घरो में खिड़कियां हैऔर दरवाज़े लगे है।

एक नदी है जो की काफी छोटी नदी है उसके बीच में एक गेट लगा हुआ है जो कि कल-कलर का है कर तो कुछ-- पेड़ पौधे है जो की हरे भरे है और कुछ झाड़ियां भी है नदी के किनारे वह भी हरे भरे--

नीचे दुकान खुला हुआ है दुकान के बाहर सारे पोस्टर लगे है एक आदमी खङा है जो कि नीले कलर का टी-सट पहना हुआ है।

एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। जिसमें चारों तरफ घासे है जो की हरे भरे हैं। कुछ पेड़ है। जो की काफी लंबे-लंबे और हरे भरे है। पार्क में बहुत सारे लड़के हैं। और कुछ आदमी लोग भी हैं।

चारो तरफ लाइट ए लगी है जो की चमक रही है दूर-दूर में कुछ पेड़ पौधे है जो की बहुत बड़े-बड़े और हरे भरे है।